अच्छी मॉडलिंग की गाडी है जो जिसमे जो लाईटिंग करी और अच्छी है और ये स्टाइलर --

कुछ व्यक्ति कुंग-फू सीख रहे हैं बेल्ट पहने हैं सफेद ड्रेस में --

ऐसे लग रहा है कोई पार्टी है शादी है जो कि बिल्डिंगों में बहुत अच्छी लाइटिंग है --

सामने में कहा जाता है ये काफी अच्छे दिखरे --

यह तस्वीर दो हजार उनिस के सोनपुरमेले की तस्वीर है।

यहां एल.जी. कंपनी के शोरूम लगी हुई है।